जैसे ये आप देख पा रहे है ये शादी की एक जगह है जिसमे सामने आपको एक दूल्हा दिख रहा होगा खड़ा हुआ दूल्हा पगड़ी लाल कलर की पहन के शेरवानी सफ़ेद कलर खड़ा हुआ है।

जैसे की आप देख पा रहे है सामने आपको बहुत बड़ा पानी दिखेगा जीसी चीज को अपन तालाब बोलते है। उसी के साथ आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक बाउंडरी बनी हुई है। जो की लोहे की गेट से पूरी कवर हुई है उसके साथ आपको एक बिच मे एक हारा कलर का आपको घाँस जैसा भी दिख जाएगा उसके साथ आपको पत्थर दिखेंगे जो कत्थ कलर के पत्थर है।

जैसे आप देख पा रहे है आपके सामने पानी वी बेह रहा है पानी का ब्रिज गया है पानी ऊपर भी आ रहा है और पानी नीचे भी बेह रहा है वैसे आपको चारों तरफ़ आपको दिख जाएंगे हरेभरे पड़े है कुछ बड़े पेड़ है कुछ छोटे पेड़ हैं।

जिसमे छोटी दुकान है। जिसके अंदर और आपको एक बोर्ड टंगा हुआ दिख रहा है। जिसमे सरसवती माता की आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। उसके साथ देखेंगे जो रोड है। जो सड़क है। जो बिलकुल एक आपको काली काली देखने को मिल जाएगी।

जैसे की आप देख पा रहे है कुंडे जैसा पानी भरा हुआ है बीच मे उसके बगल मे आपको हरी-हरी छोटी-छोटी घास देखने को मिल जाएगी उसके पीछे आपको काले कलर के थोड़े पेड़ देखनेकुछ सूखे पेड़ देखने को मिल जाएंगे।

जैसे की आप देख पा रहे है आपके सामने एक मूर्ति है। जिसमे आपको मूर्ति के अंदर तलवार हाथ मे देखने को मिल जाएगी मूर्ति के साथ एक मुकुट देखने को मिल जाएगा। मुकुट के पीछे बैकग्राउंड आपको बहुत बड़ा सा देखने को मिलता होगा।